बैटरी रिक्शा हमें यहाँ शो हो रही है ऑटो रिक्शा हमें यहाँ पे शो हो रही है।

यहाँ पे हमे एक मकान दिखाई दे रहा है जहां पे झंडा भी हमे दिखाई दे रहा है देन यहाँ पर हमे गार्डन शो कर रहा है। गार्डन की बाउंड्रीज हमे यहाँ शो हो रही है यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हमे शो हो रहे है एंड थोड़ा हमे ब्लैक एंड व्हाइट शो हो रहा है।

यहाँ पे कुछ हमें प्राचीन काल की मूर्तियाँ दिख रही है भगवान की मूर्ति है आगे एक छोटी सी मूर्ति भी है और यहाँ पर हमें डेकोरेशन दिख रहा है।

साइकिल हमे यहां दिख रही है एक्टिवा हमे यहां दिख रही है और ब्लैक कलर की से नाम लिखा गया है इसका।

बैनर्स शो हो रहे हैं ड्रेसेस हमें यहाँ शो हो रही हैं जमीन हमें यहाँ दिख रही है ब्लू रेड कलर से पेंट है जगह साइड में व्हाइट कलर की बिल्डिंग है।

और आ दो बैल हमें यहाँ दिख रही है एक पीछे बिल्डिंग दिख रही है और रास्ता दिख रहा है वहाँ से अंदर जाने का |

ग्रीन और ब्लैक कलर की हमें शो हो रही है और हमें पीछे यहाँ पे फिश शो हो रहा है और हमें लाइट के हमें यहाँ पे भी शो हो रहा है।